जो की एक झने को मोच आया है और एक झने का पैर हिला-डुला रहा है।

और उसके एक बगल में--

बगल पेड़ पौधे हैं।

शिक्षक विद्यार्थियों क्या शपथ लेते दिख रहे हैं जो की बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा--

जो कि दो तीन झने मरीज है।

यहाँ एक बहुत बड़ा तालाव है जिसमें ब बहुत सारा पानी भरा हुआ है।